सामने छोटे बड़े पेड़ हैं।

जो लाइटें लगी हुई हैं।

बड़े दो तीन पेड़ हैं।

काफी सारे तारें लगी हुई हैं।

और उनके रेट लिखे हुए है।

यहां एक कुर्सी रखी हुई है।

रंग बिरंगे बैलून लगे हुए हैं।

यह खूबसूरत सी जगह है।

ये एक दुकान है। सामने कुर्सी है।

नीचे एक बॉक्स रखा हुआ है।

टेबिल पर काफी सारे पानी के मग्गे और चम्मच रखी गये है।

नीचे एक सुंदर सी मैट बिछी हुई है।

और पीछे दीवार पे कुछ चीजें पेंटिंग से बना--

बराबर में एक पेड़ है।

और काफी सारे बूफर रखे हुए हैं।

सामने एक गेट है हरे कलर का।

लाल कलर का पेंट हुआ है।

और उसके अंदर एक आदमी है।